बहोत सुंदर तस्वीर है इसमें बच्चों को पढ़ाया व लिखाया जाता है।

नजारा दिखाई दे रहा होगा ये दरसल सनातन धर्म का एक मंदिर है।

बहुत बड़ा मंजीर दिखाई दे रहा होगा।

जो बहोत अच्छा चमकाई दे रहा है। ये बहोत अच्छी पिक्चर है। ये चीजे जो वर्ल्ड जैमस --

यह जो सामने आप फोटो देख रहे हैं--

किसी भी प्रकार का फूल फल --

पौधा मिलता है और लगा सकते हैं हम इसको--

पैसा वसूला जाता है ये भारतीय सरकार द्वारा बनाया गया है।

अलग अलग प्रकार के चुल्लू में बैठे हुए नजर आ रहे होंगे।

सुंदर है और स्वस्थ और अच्छी पिक्चर है।

यह जो सामने आपको एक फोटो दिखाई दे रही है ये फोटो किसी कोठी की लग रही है।

यह सामने जो आपको फोटो दिखाई दे रही है इस फोटो में--

ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये एक ऑफिस है जिसमें श्री गणेश बप्पा की मूर्ति है।

यह जो सामने आपको एक बहोत बड़ा रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा होगा--